पिक्चर में हमें बोर्ड पर--

कि ये कोई फंक्शन में आए हैं।

पीछे हमें डेकोरेशन की गई नजर आ रही है।

यहां पर हमे एक चेयर भी नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे पेड़--

कि ये कोई धार्मिक प्लेस पर बैठे हुए हैं।

पांच लोग दिखाई दे रहे हैं।

तीन चेयर्स दिखाई दे रही हैं।

टेबल पर हमें कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।

ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है।